दूसरे साइड में पेड़ के नीचे भी एक मोटरसाइकल लगी हुई है।

खिड़कियां इस हॉल में बहुत ही बड़ी बड़ी है।

एक कुर्सी लगी हुई हमें दिख रही है और--

नीचे बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं।

यह कोई क्रिश्चियन लोगों का समारोह चल रहा है इस समारोह में आप देख सकते हैं बीच में एक व्यक्ति खरे हैं।

यहां पे जे_सी_बी से मिट्टी को खुंद करके कार्य किया जा रहा है और कुछ घर बार भी हमें नजर आ रहे हैं।

अशोक चक्र और शेर बना हुआ है और अगल बगल--

लगाया गया है और यहां पे हमें बगल में एक व्यक्ति खड़े हैं और बहोत सारे सरसों तेल के--